ई लड़का स्मार्ट वॉच पहना हुआ है और एक एंड्राइड फोन लिया हुआ है हाथों में।

ये लड़के का बाल बड़ा-बड़ा है और बहुत ही घ --

ये शायद आर्ट एंड क्राफ्ट का कॉम्पिटिशन है कार्ड मुझे दिख पा रहा है --

और ये लड़की किसी डांस कॉम्पिटिशन में गई हुई है।

ये लड़की काफी ही अच्छा डांस --